साथ में ही किंग लिखा हुआ है रात का का समय है और सूरज अस्त हो रहा है सूर्य पीले --

बेंच पर मछलियां रखी हुई है जो सफेद और काले रंग की है।

नदी बह रही है किनारों पर छोटे-बड़े पत्थर हैं।

सड़क के किनारे इंडियन चिल एडल --

भवन बना हुआ है जिसमें संत्री और क्रीम रंग किया हुआ है आसपास हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है।

काला रंग है और कुछ पर हरे-भरे छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगे हुए हैं आसमान --

नीले बोर्ड पर बहुत सारे जानकारी दी हुई है बाहर एक आदमी वहाँ खड़ा है।

दरवाजे और खिड़कियाँ बनी हुई हैं जो कि लोहे की हैं आसमा --

साथ में ही ला रंग की ईंटें लगी हुई हैं जिनमें चारों तरफ छोटे-छोटे --

ला रंग के झंडे लगाए हुए हैं आसपास हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है।

हुए हैं जिनमें काँच की खिड़कियाँ ल --

सड़क के किनारे बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनमें चार मंजिला इमारतें बनी हुई हैं।

सबसे नीचे मंजिल पर दुकाने है और उनमें बहुत सारे बाजार --

और पत्थर गिरे हुए हैं आसपास हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है आसमान --

आस-पास दुकानें हैं घर बने हुए हैं हरियाली है पहाड़ हैं आसमान नीले --

सड़क के किनारे पी.डब्लू.डी लिखा हुआ है और दो --

सड़कें बनी हुई हैं जिनमें साथ में ही दो मंजिला इमारत है जिसमें लाइन से बनी हुई हैं।

जिसमें पीले और सफेद रंग का इस्तेमाल किया हुआ है साथ में ही एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जो कि सात-आठ मंजिला है।

सड़क के किनारे बहोत ही सुंदर शेड बना हुआ है जिसमें गाड़ियाँ खड़ी हैं आसपास हरयाली है बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं।

कच्ची सड़क बनी हुई है जिसमें एक मंजिला पवन है जिसमे लोहे का कैंचिगेट लगा हुआ है।

बाहर एक गाड़ी और एक मोटरसाइकल खड़ा है तीन आदमी वहाँ खड़े हैं जिन्होंने पीले और हरे रंग की --